और न्यूज़ पेपर भी रखे हुए है और फेन भी रखे हुए लगे हुए है।

और बाबा सामने देख रहा है और उसके पीछे एक सिद्धि नाम का एक चार्ट लगा हुआ है।

गणेश भगवान जी की दो मूर्तिया लगी हुई है और मंदिर में तरह तरह की पैन्टिन्ग कर रखी है तरह तरह के रंगो से मंदिर को डेकोरेट कर रखा है रेड रंग का दरवाज़ा है।

और इसके उपर अनेक प्रकार के गुम्बन बने हुए है।

और एक एक भईया इस एक बुलेट के ऊपर बेठ के ड्राइव कर रहे है और उसके पीछे --

सामने एक गुरुदुवारा दिखाई देरा है गुरुदुवारे के बाहर--

अ लेडीज है आदमी है।

और पंजाबी में इस गुरुदुवारे के उपर कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देरी है जिसपे लिखा हुआ है--

ऑटोस है ऑटोस के आस पास लोग है लड़के है एक अंकल जी है।

जिन्होंने धोती बांध रखी है एक भैया है साइकिल ले के घूम रहे हैं कुछ बाइक्स खड़ी हैं एक भैया बैग ले के खड़े हैं।

एच_ए_एस_एच_सी_एस बैंक पि_ओ बैंक कलरक लिए जिससे ये सी_सी गे--

वोही गवर्नमेंट जॉब रेलेटेड एम् बी बी एस वि डी एस फार्मसी नर्सिंग की साड़ी बुक्स मिल सकती है यहां पे और साइड में एक्सलेंट बुक स्टोर लिखा हुआ है ।

ब्लैक कलर की नल की से लड़का पानी डालने लग रहा है। लड़के ने रेड कलर की टी-शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई है।

और खाली गमलो में रखे हुए है वाइट कलर का पेंट हो रखा है इसमें पिंक --

सामने एक शौपिंग मॉल दिखाई देरा है जिसमे फेसन का सामान रखा वा है।

और उसके ऊपर रु ब्रुक लाइन लिखा हुआ हैं दे क्लासिक जस्ट ऑफ़ अमिन लिखा हुआ हैं ब्रुक लाइन सेण्टर लिखा हुआ हैं ।

कोर्ट के जेसे तिन दिखाई देरे उसमे सभी वाइट कलर के ड्रेस पेने हुए है।

अ हाथ में पर्स टंग रखा है बोत्तल भी टंग रखी है साइड पे दिवार पे --